सारा कुछ बनने के बाद

एक खुबसूरत एक होटल बनी है।

काफी कुछ झरने हैं पानी ऊपर से बह रहा--

सारे लोग वहां पे सब सेफ्टी के साथ काम कर रहे--

एक एयरपोर्ट है एयरपोर्ट के ऊपर चार हेलीकॉप्टर खड़े हैं लोग--

और वहां पे लोग खड़े है चार पांच गाड़ियाँ हैं इधर से उधर जा रहे--